ये एक बाइक की जगह बनी हुई है कुछ बाइके पार्किंग मे लगी हुई है सामने एक इमारत बनी हुई है जो की ऑरेंज कलर की है।

ऑरेंज कलर का एक शटर सा भी लगा हुआ है। सामने पेड़ लगे हुए है जो सफेद और लाल कलर के है कुछ पत्तियां डली हुई है।

नीचे बोटले रखी हुई है परफ्यूम भी रखे हुए है मोजे भी रखे हुए है बगल मे एक हरे कलर की शटर लगी हुई है।

वह हिंदुस्तान सब्जी मंडी लिखा हुआ है। एक बैनर टँगा हुआ है। सामने दो लोग किताबों मे से कुछ पढ़ रहे है। आगे साइकिल पार्किंग मे लगी हुई है। एक आदमी सामने बैठा हुआ है।